इन्ह प्रतिमाओं सब ने अपने हाथ में एक-एक वाघ यंत्र ले रखा है। इनकी --

खेत में पानी भरे हुए हैं और धान की बीज को रोपा गया है।

इस फोटो में हमें एक मॉल दिखाई दे रहा है। मॉल में ढेर सारे क्लोथ्स हैंगर --

फर्नीचर दिखाई दे रहा है जो लकड़ी का बनाया गया है। यह भूरे कलर का फर्नीचर है।

फल सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं और चारों तरफ लोगों की काफी मात्रा में भीड़ है।

यहाँ एक व्यक्ति खड़े होकर उसके कॉफ़ी स्टाल पे कॉफ़ी पी रहा है।

रोड के अगल-बगल में बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं जिनके पत्ते सुख के नीचे जमीन पे गिरे हुए हैं।

यहाँ एक बड़ी जहाज खड़ी है और इसमें यात्री सवार होके उड़ान भरेंगे।